और एक पार्क दिखाई दे रहा है। पार्क में कुछ आदमी घूम रहे हैं।

और ऊपर मानसरोवर स्टेशनरी का बोर्ड भी लगा है लोहे की सीढ़ियां दिख रही है एक पड़दा दिख रहा है।

ए_सी लगा है सोफे रखे है।

मुझे बहुत सारे लड़के क्राफ्टिंग का काम करते हुए दिख रहे है। वो टेबल के उपर कुछ क्राफ्टिंग का वर्क कर रहे--

जिसके ऊपर चंडीगढ़ भी लिखा है।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

खड़ी दिख रही है पानी का कैंपर भी वहां पर पड़ा है।

और वहां पे भी लिखा हुआ है।

एक शोरूम दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बिना साड़ी सेंटर लिखा है।

पीछे एक बोर्ड भी लगा दिख रहा है।

और बिल्डिंग के आगे छोटासा पार्क बना रखा हैं।

और वहां पर पीले और गुलाबी रंग के बहोत ही सुंदर फूल भी लगे दिख रहे है बहोत सारे गमले दिख रहे है।

और छत पर बहोत बड़े बड़े झूमर लगे हैं।

और एक बड़ा पेड़ दिख रहा है सोलर पैनल दिख रहा है डी_ए_वी का बोर्ड लगा हुआ है।

छत के ऊपर पंखे लाइटें भी लगी हैं और एक फ्रिज पड़ा है उसके ऊपर कोका कोला लिखा है।